यह स्कूल है यह स्कूल में बहुत सारे क्लासे हैं यह इस क्लास के बाहर बहुत ही बड़ा बरंडा है यह बरंडा पर बहुत सारे ब्रेंच लगे हुए हैं।

बहुत सारे लड़का लड़की अपने-अपने काम कर रहे हैं यह लड़कियां सिलाई बुनाई सीख रही है।

यह कॉलेज काफी बड़ा है इस कॉलेज में बहुत से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते होंगे यह कॉलेज के किनारे बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधा लगे हुए है।

ये सैलून में बहुत ही सुंदर मेकअप भी किया जाता है डिज़ाइन से बाल भी काटे जाते है यह पर बहुत ही सुंदर जगह ए.सी. है पंखा लगी है बहुत स्टैण्डर्ड है ।

यह बच्चे अपने-अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहां पर एक टीचर भी है यह टीचर हर बच्चे की प्रोजेक्ट देख रही है।

पेट्रोल पंप है यह पेट्रोल पंप ख़फ़ी बड़ा है यह पेट्रोल पंप में बहूत सारे छोटे बड़े गाड़ियाँ आती है यहाँ पर --

बहुत सुन्दर अमरुद रखा गया है। यह अमरुद बेचते हैं।

बहुत सारी भीड़ लगे हुई है यह सड़क पर बहुत सारी लेडीज जेंट्स बच्चे भी है यह सड़क पर बहुत बड़ा मंत्री भी आया हुआ है यह मंत्री शायद